यह तस्वीर मे मुझे एक गार्डन दिखाई दे रहा है गार्डन मे बोहत सारे पेड़ पोधे लगे हुए है और यहाँ पर मुझे घास भी दिखाई दे रही है जोकि हरे कलर की बीच मे से मुझे क्रॉस जाते हुए यहाँ पर सड़क दिखाई दे रही है सड़क के ऊपर फर्श लगा हुआ है ।

यह दृश्य देखने पर बहुत ही अच्छा लग रहा हैयहाँ पर पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहा है और ये बहुत ही अट्रैक्टिव और शानदार लग रहे है ये मंदिर जैसा दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर मे मुझे एक रोड दिखाई दे रहा है रोड का कलर ग्रे है रोड के पास मुझे कुछ बाउंडरी करी हुई दिखाई दे रही है जिसके ऊपर पेड़-पौधे लगे हुए है ये देखने मे बोहत अट्रेक्टिव और शानदार लग रहा है सामने मुझे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही हैजिसका कलर मुझे येल्लो दिखाई दे रहा है उसमे कुछ विंडोज है ।

यह त- तस्वीर में मुझे मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर में बहुत सारी लाइटे लगी हुई है और ये व्हाइट ऑरेंज रेड कलर का दिखाई दे रहा है और ये देखने पर बहुत ही अट्रेक्टिव और शानदार लग रहा है बाहर के तरफ मुझे कुछ फर्श दिखाई दे रहा है जो की ग्रे कलर ---

यह तस्वीर में मुझे एक गार्डन दिखाई दे रहा है गार्डन में दोनों साइड घास फूस उगी हुई हैयहाँ पर मुझे बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पर मुझे कुछ लोग जाते हुए दिखाई दे रहे है।

बाहर की साइड एक मुझे रोड दिखाई दे रहा है कुछ लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैयहाँ रात का दृश्य हो रहा हैऔर देखने पर बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है है ।

तस्वीर में मुझे एक मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर में मुझे बोहत सारी लाइट लगी हुई दिखाई दे रही है मंदिर में मीनार बना हुआ है मीनार के ऊपर झंडा लगा हुआ है माइक भी लगा हुआ है उसके ऊपर लाइट टंगी हुई हैयहाँ पे सामने मुझे एक तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमे भगवान की फोटो लगी हुई है ।

मुझे एक मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर का-क मंदिर मे मुझे मीनार भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे चार मीनार है जिसका कलर मुझे ऑफ व्हाइट दिखाई दे रहा है और उसके बाहर मुझे एक गेट दिखाई दे रहा है जिसमें से सड़क जा रही है ।

मुझे आसमान बिल्कुल साफ़-सुथरा खुला दिखाई दे रहा है ये जो तस्वीर देखने में बोहत अट्रेक्टिव लग रही है और यह पूरी तस्वीर दर्शनीय है।

पेड़ बोहत ही बड़ा दिखाई दे रहा है और आसमान बिलकुल खुला-खुला दिखाई दे रहा है और यह दर्शनीय है बोहत ही अट्रेक्टिव सा लग रहा है।

यह तस्वीर में मुझे वाटरपार्क दिखाई दे रहा हैवाटर पार्क में बोहत सारे झोले लगे हुए ये दिखाई दे रहे है यहाँ पर मुझे सामने मिकी माऊस का झोला लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने देखने पर मुझे एक बड़ा सारी चट्टान दिखयी दे रही है जिसके ऊपर पेड़-पौधे लगे हुए है और आसमान बिलकुल साफ सुथरा खुला दिखाई दे रहा है बीच मे देखने पर बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है पेड़ के नीचे मुझे कुछ पानी का भरा हुआ गढ्ढा दिखाई दे रहा है और ये त-- तस्वीर देखने पर बोहत रसनीय अट्रेक्टिव है।

एक ब्राउन कलर पत्ता दिखाई दे रहा है उस पीले कलर की कुर्सी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर कुछ लोग भी दिखाई दे रहे है सामने की तरफ में मुझे एक स्टेज दिखाई दे रहा है स्टेज में बोहत सारी कुर्सियाँ रखी हुई हैऔर ये दर्शनीय देखने लायक है ये बोहत अट्रेक्टिव है ।